यहाँ पे एक हॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारा आदमी है और दुकान पे बहुत सारा सामान --

बहुत सारा बलून्स टंगा हुआ है | हर कलर का बैलून्स है और औरत सब खड़ी है पूरा डेकोरेट है बहुत सुंदर लग रहा है देखने मे --

यह एक पार्क है और एक आदमी बैठा हुआ है। पार्क में हरा-भरा जंगल भी है। ऊपर में छाता अ --

कुर्सी लगा हुआ है और पार्क में वृक्ष भी है। सूर्य का किरण भी आ रहा है। देखने में बहुत सूंदर लग रहा है। अच्छा --

ऐसे भी एक मूर्ति दीवार में एक मूर्ति बना हुआ है और हरा कलर का पेंट भी किया हुआ है। घर का दीवार बहोत सुंदर है और --

यहाँ से देखने के लिए गाता है और सूंदर दिखाई देता है और मैं मैं भी देखती हु क्या --

नाव में एक नाव में ढ़ेर सारा आदमी हैं और नदी से मछली पकड़ रही हैं।

आ आ और कुछ आदमी वाइट कलर का गंजी पहना हुआ है और रेड कलर का गमछा भी बाँदा हुआ है और बहुत सूंदर पानी भी है और मछली